मेरे सामने एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है। ए_टी_एम रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

ये मेरे सामने एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे--

यहा पर एक बस भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है ए ए--

बिल्डिंग का कलर येलो कलर का दिखाई दे रहा है बिल्डिंग का कलर वाइट कलर का भी दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क में बहुत सारे--

यहां पर एक पोस्टर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें विवा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ आदमी और किसी को देखते हुए भी दिखाई दे रहे--

ये एक राजस्थान की बस लिखा हुआ दिखाई दे रहा--

मेरे सामने एक गली दिखाई दे रही है गली में बहुत सारी लाइट भी दिखाई दे रही है।

मेरे सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

सरक ये एक्सीडेंटल दिखाई दे रहा है।

यहां शीशी के रैक दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक झील भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

जहाज का कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।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

मेरे सामने एक कोरोना सेंटर दिखाई दे रहा है।

यां पर इंश्योरेंस भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।